आसपास मे कई लोग भी मछलियां बेच रहे हैं और काफी चहल -पहल दिख रही --

मकान थोड़ा पुराना लग रहा है पर इतना भी पुराना नहीं जिस में कोई रह ना पाए।

कई महिला एक जगह पर बैठ कर कुछ अपना पूजा-पाठ कर रही हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि ये कुछ तरह का समारोह या त्यौहार है। महिलाएँ रंग-बिरंगी साड़ियाँ पहन कर --

यहां पर एक दुर्गा माँ की मूर्ति है यहां पर कई लोगो की भीड़ है और कई पुजारी भी हैं इस फ़ोटो इस चित्र से ये प्रतीत होता है कि यहां दुर्गा माँ की पूजा हो रही है।

तस्वीर खिचवा रहा है उसके पीछे कई सारे फूल और पौधे हैं काफी ही हरा भरा माहौल है।

एक युवा अपनी तस्वीर खिचवा रहा है और उसकी बॉडी काफी आकर्षित लग रही है। पीछे का माहौल जिम का माहौल लग रहा है।

और उस रेलवे स्टेशन का नाम है हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत से रिक्शा चालक खड़े हुए हैं जो सवारियों का इंतजार कर रहे हैं।

इस दृश्य में ऐसा लग रहा है यह किसी शादी समारोह का जगह है और बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों के सामने एक स्टेज बनी हुई है।

पीछे के माहौल से ऐसा लग रहा है वो एक रेस्टोरेन्ट में बैठे हैं।

यह दृश्य एक फैक्ट्री का लग रहा है। जहां बहोत से लोग काम कर रहे हैं और एक लड़का जो अपनी तस्वीर खिचवा रहा है वो भी इसी फैक्ट्री में काम कर रहा है।